इस कमरे में एक ब्लैक व्हाइट कलर की एक अलमारी रखी हुई है।

जहां पर डॉक्टर बैठी हुई हैं।

इस पार्क में एक बड़े पेड़ भी--

यहाँ पर कूलर भीं रखें हुए हैं।

ब्लैक कलर की व्हाइट कलर की गाड़ी दिख रही हैं।

दो तीन जेंट्स भी खड़े हैं या कार का कारों का--

बहुत सारी बोरियां लगी हुई हैं।

कार जा रही है यहां पर एक बंदे भी खरा है।

इस मैदान में एक बड़ा पेड़ भी है।

बहुत सारे लाइटें लगी हुई है लाइट की वजह से रात के समय में भी रोशनी दिख रही है।

यह एक किराना दुकान का दृश्य है जिसमें--

इसमें लैपटॉप भी रखा हुआ है।

लोग क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें एक--